बहुत सारे लोग बैठे हुए दिख रहे जो की एक रसोई घर जैसे दिख रहा है जहा पे लोग सब्जी काटते हुए खाना बनते हुए और एक पत्रे के निचे एक रूम बनाया हुआ दिख रहा हैं।

यहाँ पे मुझे बहुत ाचा मौसम दिखाई दे रहे है|